आदमी ने हरी टी शर्ट पहनी हुई है आदमी का रंग काला है एक वॉच है अ उसके पास एक चश्मा है।

कई सारे रंग बिरंगे कपड़े नजर आ रहे हैं।

उपर एक काँच का रैक नजर आ रहा है नीचे बैठने के लिए मुड्डी नजर आ रही है।

पीछे बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं आगे बहोत सारे--

एल_ई_डी में ये कोई चढ़ती हुई सीढ़ियां नजर आ रहीं हैं।

खुले मैदान में एक बहोत बड़ा पेड़ दिख रहा है जो ग्रीन कलर का है।

ये एक दुकान के बाहर की फोटो नजर आ रही है जो पर्सनल की दुकान लग रही है।

रखे हुए है जैसे की इसकी--

जैसी चीजें आगे एक स्विफ्ट नजर आ रही है जो वाइट कलर की --

यहां पे बहुत सारी मुझे साइकिलें दिख रही है कलर की।

ये गजानन गेस्ट हाउस की फोटो नजर आ रही है।

ये तीनों लड़के एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं।

दो रस्ते नजर आ रहे हैं एक खिड़की नजर आ रही है।

ये ऊपर की तरफ से पैक नजर आ रहा है।

ये एक स्ट्रीट मंदिर का फोटो नजर आ रहा है।

पीछे बहुत सारी फेंसिंग नजर फेंसिंग नजर आ रही है।

इधर बाहोत सारे पेड़ हैं बाहोत सारे घने --

पेड़ पीछे की तरफ नजर आ रही है एक बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

ये एक खुले डैम की फोटो लग रही है।

इसमें लिपस्टिक बिंदी अन्य चीजें--

ये एक बार्बर की दुकान लग रहीं हैं।

खाने का सामान रखा हुआ है ऊपर स्निकर्स चॉक--

ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर कि फोटो नजर आ रही है।

उसके पास दो डिब्बे कांच के डिब्बे में बिस्किट रखे हुए हैं एक आदमी चाय पीता हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं जो पंक्ति में उगाए हुए हैं और छोटे हैं।

इधर एक आदमी सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है।

इधर पहाड़ इधर घर के आगे बहुत सारी फूलों से सजावट करी हुई है।

टी शर्ट में और लुंगी पहन के चलता हुआ नजर आ रहा है जिसके सर पे पगड़ी है।

दूसरा आदमी ऑरेंज टीशर्ट में चलता हुआ नजर आ रहा है।

जो पाथ है वो पेड़ों से सजाया हुआ है।

एक मूर्ति है वो पत्थर की है और ब्राउन कलर की है।

के ऊपर बड़ी सी इमारत दिख रही है जिस पे घड़ी दिख --